छः ठो पेड़ है एक और बेंच एक बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है एक बच्चा झूला झूल रहा है।

छत टाइप का है एक दो मोर बनाया हुआ है गनेश जी का फोंटो है।

टावर ये एक बिजली का खंभा है चार खंभा लगाया हुआ है।

उसकुल के बाहर एक मेन रोड है जहां पे दो भैंस जा रही--

वहां पे एक आदमी है जो ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ वहां पे--

एक दुकान है वो शोकेस का दुकान है वहां पे--

एक पोस्ट ऑफिस है यहां पे एक डाक--

एवं सुरक्षा बीमा योजना जन सुरक्षा के हित में--

उसमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है जिसमें--

एक अच्छा सा पेड़ है जिसको व्हाईट पेंट है एक गेट हैं जो कि बाहर जाने के लिए हैं।

नहीं मेरे को क्या बट एक लाल कलर का दिवाल है वो उसी

एक मोर है जो कि खरा है उसके बगल में बहुत से जंगल है उसके बगल में कुछ पेड़ है।

ऑरेंज कलर का रंग निकल रहा है बगल में एक लाल कलर का पोस्टर भी है।

कोई एक गाड़ी पे चढ़ा के कहीं ले जा रहा है एक मालिक है उसका जो उजला कलर क --

एक आदमी गाड़ी से जा रहा है बहोत सुंदर सा आसमान है एक सोईजन का पेड़ भी है।

वहां पे एक पेड़ पताई का कुछ पत्ता भी है।

वहां एक जाने को सरक भी बना हुआ है काले रंग की दीवाल है।

एक आदमी है जोकी स्टेज पे फोटो घिचवा रहा--